यह मस्जिद है मस्जिद में लगा हुए है उपर से दो-तीन तार गए हुए हैं नीचे में तीन आदमी है और फिर बगल से तीन-चार जगह से रास्ता है उधर लुंगी पहिन के कोंई बैठा हुआ है इधर कोंई ठेला लगाके समान बेच रहा है अपना --

छोटे झरने में दो बच्चें नहा रहें हैं।

ये किराना जरनल स्टोर है। यहाँ पे मैग्गी का पैकेट है फिर कॉर्नफ्लैक्स है री रस्क बिस्कुट है शैम्पू बजाज तेल ये सब का लगता है छोटा सा शॉप खुला हुआ है।